लाइटिंग लिखी हुई दिखाई दे रही है।

इसका लोगो येलो कलर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके दो शटर भी दिखाई दे रहे है और यहां पर इसके दरवाजे शीशे के भी दिखाई दे रहे हैं।

शोरूम दिखाई दे रहा है इसके ऊपर बहुत सी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है बिल्डिंग में बहुत से फ्लैट भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर येलो कलर का लोगो लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ डेकोरेशन भी की हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक टेंट भी लगाया हुआ दिखाई दे रहा है टेंट के ऊपर से पिंक कलर की दिखाई --

दिवार येलो कलर की दिखाई दे रही है यहां पर रेड कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

भाई यहाँ पर बहोत सारी गाड़ी अभी खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं यहाँ पर--

घर का कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा--

यहां पर बहोत सारी टेबल कुर्सी भी डली हुई दिखा--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

पर एक खिड़की भी दिखाई दे रही है वहां पर--

एक तेल टैंकर भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां की डेकोरेशन बहोत अच्छी कर रखी है यहां पर कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही है।

दीवार का कलर ब्लू कलर का दिखाइ--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

यहां पर बहुत सारी लाइटें झुकी हुई दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारी--

छत दिखाई दे रहा है। ट्रक पेट्रोल का दिखाई--